बास न बांस है और त्रिशूल का ध्वजा लगाया है और --

और इधर एक होटल है जिसमें लि--

और दीवाल पंखा एक लगाया है और--

भिड़ हैऔर साइड मे एक पेड़ हैऔर--

घर के पीछे एक टावर है।

मोबाइल नंबर है और एक आदमी अंदर में काम कर रहा है।

खड़ा हैऔर इधर बहुत लाइट --

बहुत सारा कुर्सी है कुर्सी में कपड़ा--

लगा दिया है और कुर्सी पकड़ के एक आदमी--

दुकान के आगे एक गुमटी है जो कि अभी बंद है और--

और घर के पीछे में एक टॉवर है।

एक व्यक्ति हेड फोन लगा के सिर पर हाथ रखा है और एक आदमी

यह एक पंडाल है जो कि--

वहां पे शादी हो रहा है और दूल्हा खड़ा होकर।

फोटो खींचा रहा है और पंडित जी साइड में--

खैनी बना रहा है और एक बहुत बड़ा--

कुर्सी पर बैठा है और एक व्यक्ति फ्लोर के पास आ रहा है।